javaजावा में नॉन स्टेटिक ब्लॉक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
नॉन स्टेटिक ब्लॉक के बारे में
नॉन स्टेटिक ब्लॉक कब निष्पादित होता है
नॉन स्टेटिक ब्लॉक का साधारण उदाहरण
और हमें कंसट्रक्टर्स क्यों चाहिए
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 जावा डेवलपमेंट एनवायर्नमेंट जेडीके 16 और इक्लिप्स इडे 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी अब हम देखेंगे कि नॉन स्टेटिक ब्लॉक क्या है
जो भी कोड दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच लिखा जाता है नॉन स्टेटिक ब्लॉक होता है
हम यहाँ सिंटैक्स देख सकते हैं
नॉन स्टेटिक ब्लॉक कब निष्पादित होता है160
नॉन स्टेटिक ब्लॉक तैयार किए गए प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए निष्पादित होता है
यह कंस्ट्रक्टर्स के निष्पादन से पहले निष्पादित होता है
यह क्लास के इंस्टेंस नंबर वैरिएबल्स को इनिशिलाइज कर सकता है
कोई अन्य निष्पादन जैसे कि गणना भी ब्लॉक में दिया जा सकता है
अब इक्लिप्स पर जाएँ और नॉन स्टेटिक ब्लॉक का उपयोग करने की कोशिश करें
मैंने इक्लिप्स में पहले ही नॉनस्टेटिकटेस्ट नामक क्लास खोल दिया है
मैंने पहले ही आ नामक क्लास बना दिया है
अब क्लास आ में मैं पहले इंट प्रकार का एक वेरिएबल बनाऊँगा
अतः टाइप करें इंट आ सेमीकॉलन फिर एंटर दबाएँ
कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोष्ठक और डबल कोठ्स में नोन स्टैटिक ब्लॉक ओएफ एएन इंस्टेंस ओएफ क्लास आ सेमीकॉलन
फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोठ्स में थे वैल्यू ओएफ आ इस प्लस आ सेमीकॉलन
अब हम एक कंस्ट्रक्टर घोषित करेंगे
अतः टाइप करेंpublic आ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स खोलें एंटर दबाएँ
फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ओएफ टाइप आ सेमीकॉलन
फिर टाइप करेंSystem डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे वैल्यू ओएफ आ इस प्लस आ सेमीकॉलन
अब इस फाइल को सेव करें
इक्लिप्स में क्लास नॉनस्टेटिकटेस्ट के अंदर क्लास आ का एक ऑब्जेक्ट बनाएँ
अतः टाइप करें आ स्पेस आ1 इक्वल टो न्यू स्पेस आ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
अगली लाइन में हम क्लास आ का एक और ऑब्जेक्ट बनायेंगे
अतः टाइप करें आ स्पेस आ2 इक्वल टो न्यू स्पेस आ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
अब फाइल को सेव और रन करें
अतः Ctrl और Ctrl कीज दबाएँ
हमें निम्न प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता हैं
हम देख सकते हैं कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है नॉन स्टेटिक ब्लॉक निष्पादित होता है
non स्टैटिक ब्लॉक ओएफ एएन इंस्टेंस ओएफ क्लास आ और इंस्टेंस वेरिएबल आ 0 से इनिशिलाइज है
केवल उसके बाद कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है
कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ओएफ टाइप आ और यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल फिर से 0 इनिशिलाइज होता है
फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है नॉन स्टेटिक ब्लॉक निष्पादित होता है
यह प्रक्रिया पुनः होती है
हमारे पास क्लास में विभिन्न नॉन स्टेटिक ब्लॉक्स हो सकते हैं
इस मामले में वे क्लास में प्रदर्शित होने वाले क्रम में निष्पादित होते हैं
अब हम अभ्यास कर सकते हैं
क्लास आ में पहले के बाद एक और ब्लॉक शामिल करें
अतः फिर कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में सेकंड नोन स्टैटिक ब्लॉक ओएफ एएन इंस्टेंस ओएफ क्लास आ सेमीकॉलन
फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे वैल्यू ओएफ आ इस प्लस आ सेमीकॉलन
अब फाइल को सेव करें Ctrl और एस कीज को एक साथ दबाएँ फिर प्रोग्राम को रन करने के लिए Ctrl और फ़11 दबाएँ
हमें निम्न प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता हैं
हम देखते हैं कि पहले ब्लॉक के निष्पादित होने के बाद दूसरा निष्पादित होता है
तभी कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है
अब आप महसूस कर सकते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर्स की आवश्यकता क्यों है
उत्तर है क्योंकि हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की आवश्यकता नहीं है
लेकिन नॉन स्टेटिक ब्लॉक पैरामीटराइज नहीं हो सकते
आपके पास बाहर से वैल्यूज लेने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है
अतः नॉन स्टेटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के लिए पर्याय नहीं है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
नॉन स्टेटिक ब्लॉक के बारे में और इस ब्लॉक का उपयोग करने के बारे में
स्व मूल्यांकन के लिए ब नामक एक क्लास बनाएँ
एक नॉन स्टेटिक ब्लॉक और कंसट्रक्टर बनाएँ जैसे ट्यूटोरियल में दिखाया गया है
बनाए गए क्लास नॉनस्टेटिकटेस्ट में क्लास ब का एक ऑब्जेक्ट बनाएँ
आउटपुट की जाँच करें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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं